जो कि ये किसी स्थान पर खड़ी हुई है किसी--

होटल दिख रहा है इस होटल का नाम होटल गंगा पैलेस है।

एक सूट की दुकान दिख रही है।

और यहां पर एक व्हाइट स्क्रीन लगी है प्रोजेक्टर लगा हुआ है।

नृत्य करते हुए दिख रहे हैं स्टेज पर।

और एक लड़का यहां पर जो है खड़ा हुआ फोन में बात कर रहा है इसके हाथ में काले रंग की घड़ी लगी हुई है।

और यहां पर आइसक्रीम मिलती है।

यहां पर अ बाढ़ लगा हुआ है दिखा हुआ है बोर्ड में--

इस फोटो में मुझे एक तलाब दिख रहा है।

जहां पर टेम्पर ग्लास अभी लगा रहा है कुछ नहीं शायद ये कोई पेन बेच रहा है।